इस फूल की पत्तियां हरे रंग की दिखाई दे रही है।

ए_टी_एम के बाहर लोगों की लंबी कतार भी दिखाई दे रही है।

मंदिर के हिस्से छोटे छोटे खंडो में बटा हुआ दिखाई दे रहा है।

रेलिंग में से जाती हुई एक औरत भी दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर मे दो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति दीवाल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ ईंटें और रेत रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक कुंडी लगी हुई है जिसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ है।

इस खेतों के बीच में एक छोटा सा मकान दिखाई दे रहा है।

मकान के पीछे से बिजली के खंभे दिखाई दे रहें हैं।

अलमारी के बगल में एक केतली और दो पानी की बोतल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सैलून दिखाई दे रहा है।

सैलून में नाई के पास एक ग्राहक बैठा हुआ दिखाइ दे रहा है।

ग्राहक के सीने पे तौलिया दिखाई दे रहा है।

इस सलून में ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में माँ सरस्वती का पंडाल दिखाई दे रहा है।

इस पंडाल में तिरंगे रंग की गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

पांडाल के पास एक म्यूजिक सिस्टम और लैपटॉप रखा हुआ दिखाई--

मेज के चारों तरफ काली रंग की कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है।

पानी के फव्वारे के बीच कुछ रंग-बिरंगे लाइट्स लगी हुई है।

पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इस मैदान में पूरी तरफ घांस उगी हुई दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में तसले दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति फोन चलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान के पास एक दीवाल दिखाई दे रहा है दीवाल का रंग हरा और सफेद दिखाई दे रहा है।

मैदान के पीछे घास भी उगी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस टेबल पे एक काले रंग की लंबी ट्रे मे सुशी दिखाई दे रही है।

तुलसी के ऊपर गुलाब बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का दिखाई दे रहा है।

लड़के के पीछे एक झरना दिखाई पड़ रहा हैं।

झरने से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य रात के समय की दिखाई पड़ती है।

इस तस्वीर में एक चट्टाननुमा रास्ता दिखाई दे रहा है यहां तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां दो लोग गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे एक व्यक्ति अपने फोन से तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक मच्छी की दुकान दिखाई दे रही हैं दुकान में रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहां कटी हुई और बिना कटी हुई भी मछली दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक घड़ी घड़ दिखाई दे रहा है।

घड़ी घर के नीचे कुछ टीन के दुकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति साइकल से कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

उस व्यक्ति ने मुंह पे मास्क लगा रखा है।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

सरक के किनारे पे पेर पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के एक छोर पे बिजली के खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है।

जिम की दीवाल काली और लाल रंग की दिखाई दे रही है।

जिम में शीशे लगे हुए हैं एक व्यक्ति अपने पैरों की अभ्यास कर रहा है।

वाटर पार्क में कुछ रिंग्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक बत्तख नुमा झूला वाटर पार्क के पूल में दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

इस मैदान में लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग मैदान पे ही बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस मैदान के पीछे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं।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

पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है अपने गाड़ियों के साथ।

इस पेट्रोल पंप में रोशनी के लिए ऊपर की ओर लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बाइक की शोरूम दिखाई दे रही है यह शोरूम रॉयल एनफील्ड बाइक की है।

इस शोरूम में खटालों में हेलमेट रखे हुए हैं।

इस विभाग के बाहर एक प्रतिमा लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति पानी की पाइप से स्कॉर्पियो पे पानी डाल रहा है।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

इस मकान में कई सारी खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

रंग बिरंगी फूल दिखाई दे रहे हैं।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

कमरे का दिवाल सफेद रंग का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक घाट दिखाई दे रहा है घाट के पास एक ब्रिज बना हुआ है।

घाट से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक भव्य इमारत दिखाई दे रहा है।

इमारत के मुख्य द्वार पे एक भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।

इमारत सफेद रंग का है इमारत में शीशे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग का निर्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक गैराज दिखाई दे रहा है गैराज में अलग अलग कंपनियों के खराब गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

इस जगह दो मैकेनिक गाड़ी ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मैदान में एक व्यक्ति अपनी छाया चित्र ले रहा है।

मैदान के चारों तरफ ह बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में किसी मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

मुख्य द्वार के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक व्यक्ति हवा मिठाई बेचते हुए दिखाई दे रहा है।

इस मुख्य द्वार के ऊपर एक प्रतिमा लगी हुई है जिसमें कोई व्यक्ति बैठा हु --

दुकान के काउंटर के अंदर दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का नाम वेदांता बुक वर्ल्ड है।

इस तस्वीर मे रात का समय दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग मोमबत्तियों के पीछे खड़े हुए सफेद कपड़ो में दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बैंक दिखाई दे रहा है यह बैंक बैंक ऑफ़ बड़ोदा है।

यहां पे उजले और नारंगी रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां पे एक गेंदे की फूल की माला भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में मां दुर्गा का पंडाल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में तीन लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पंडाल के पर्दे नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं।

मैदान में सब तरफ कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस लाइब्रेरी में अलग अलग जगह खंड बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस लाइब्रेरी में सनमाइका नीले रंग का यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है।